पेट्रोल पंप हमें दिखाई दे रहा है नीले सफेद और पीले रंग के बलून लगे हुए हैं पूरे पेट्रोल पंप पे डेकोरेट है।

गाड़ियां भी हमें कहीं कहीं खड़ी हुई इसमें नजर आ रही हैं।

और हमें एक टब के अंदर वो पैकेट पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं उन्होंने हाथ में सफेद ग्लव्स पहने हैं।

सैमसंग लिखा हुआ है माइक्रोमैक्स लिखा है।

पोन्स रखे हुए नजर आ रहे हैं बीच में एक फ्लावर पॉट है।

एक महिला और एक आदमी बैठे हुए हैं बेंच के ऊपर महिला ने साड़ी पहनी है।

और हमें सफेद आसमान ऊपर दिखाई दे रहा है।

गार्डन है और गार्डन में यह रात का समय हमें दिखाई दे रहा है बस सिर्फ--

सफेद हमें रोशनी लाइट की नजर आ रही है।

एक बड़ा सा स्टेज बना हुआ सामने दिखाई दे रहा है पेड़ लगे हुए हैं हरे हरे--

और गमलों में हरे हरे पेड़ लगे हुए हैं।

एक आदमी हमें दिखाई दे रहा है जाता हुआ--

वहाँ गमले भी लगे हुए हैं उसमें पौधे लगे हैं।

हमें इस तस्वीर में मस्जिद दिखाई दे रही है जो--

रेलवे भोपाल जंक्शन लिखा हुआ है और बिल्डिंग बनी हुई है।

बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई हैं सफेद कवर वाली और हमें भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है आदमी हैं औरत हैं।

हमें स्टेज पूरा बना हुआ दिखाई दे रहा है।

और आगे हमें उसके पेड़ लगा हुआ नजर आ रहा है।

पानी हमें भरा हुआ तालाब में नजर आ रहा है और बीच से हमें एक बड़ा सा पुल।

हरी हरी घास पीली पीली सी भी थोड़ी हमें नजर आ रही है दूर तक--

और हमें अंदर पेड़ लगे हुए नजर आ रहे हैं बड़े बड़े--

लाल कलर की टी शर्ट पहनी हुई है उसका चेहरा छुपा हुआ है।

हमें इस तस्वीर के अंदर टेबल पर रखा हुआ--